जो मछली बेच रहे हैंउनके सामने कुछ और व्यक्ति खड़े हैंऔर बैठे हैं दुकान के पास रोड है और वाहन खड़ी है ।

हमने एक इमारत है जिसके सामने बहुत सारे व्यक्ति हैं। और वहांन खड़ी हुई है।

कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने टेबल है व्यक्ति के चारों और अलमारि यां बनी है।

व्यक्ति खड़ा है। जो सामने की ओर देख रहा है। कि चारों ओर अलमारियां बनी है और सभी अलमारीयां में सामान रखा हुआ है।

व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है आस पास बहुत सारी बुक रखी हुई है और बहुत सारी आलमारियां बनी--